बढ़िएन मस्त पेंट मरीन हे ऊथे रास्ता हे ते घर उर सब ठी जाय हे देखे--।

हमु जाथी पूजा करे बढ़िया ल अगरबत्ती लेके बड़ियां से पूजा करथे